और अपने घरों में अच्छी तरह पकवान बनाती और अपनी नए-नए वस्त्र पहनकर डांस भी करती हैं और जाती--

बहुत अच्छी नदी है जो मंदिर भी दिखाई देती है और दो लोग भी कुछ कपड़े नहीं पहने हुए --

और अपने मन का मोबाइल लेने के लिये हम बोहत ज्यादा जाते हैं।